यहाँ ये शाम का टाइम हो सकता है| यहाँ सूरज अ बादलों से छुपा हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ मुझे तो छोटा-सा तलाब की अ तालाब भी दिखाई दे रहा है ।

ये एक मार्केट का फोटो दिखाई दे रहा है बहुत सारे बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है| ये एक सिटी का फोटो हो सकता है।

यहाँ आसपास थोड़ा बहुत पेड़-पौधे देखे जा सकते हैं| एक सुबह का फोटो दिख रहा है| यहाँ पे मुझे बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट किए गए फोटो दिखाई दे रहे हैं।

ये एक गार्डन का फोटो ये एक सड़क का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ मेरे सामने बोहत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जहाँ मेरे सामने एक आय साइड लगे हुए घर भी दिखाई दे रहा है।

ये रोड पूरा साफ दिखाई दे रहा है| और ये सुबह का दोपहर का फोटो दिखाई दे रहा है| यहाँ पर धूप भी देखी जा सकती है मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है।

मुझे एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर दिखाई दे रहा है| ये बोहत ही पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जंख के आगे-आगे की बोहत ही रंगीन करी गई है।

ये दो व्यक्ति कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ मुझे को सारे पेड़ सही तरीके से कटे हुए दिखाई दे रहा है| ये एक पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ नीचे घास भी अच्छे से दिखाई दे रही है।

यहाँ पे मुझे एक बड़ा-सा यू.पी.आई. पिन यू.पी.आई. दिखाई दे रहा है| ये एक दुकान यू.पी.आई. दिखाई दे रहा है| यहाँ मुझे एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे बोहत सारे समान रखे हुए दिखाई दे रहा है| किराना दुकान पे यू.पी.आई. दिख रहा है।

अभी यहाँ पे इस फोटो में मुझे कुछ लोग भी दिखाई नहीं दे रहा है और ये फोटो बोहत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने बड़े से जानवर दिखाई दे रहा है| यहाँ एक ज़ू फोटो हो सकती है जहाँ ये लोग कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनके आस-पड़ोस के सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं या उनके पीछे बड़े-बड़े पेड़ भी देखे जा सकते हैं।

मेरे सामने एक हाथी जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ उसके पीछे बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं| एक तालाब सब दिखाई दे रहा है जहाँ हाथी हाथी के दांत बहुत बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं| हाथी आराम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक बहुत सारे जिराफ दिखाई दे रहे हैं जहाँ ये खाना खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ ये घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं| जहाँ इनके शेल्टर के नीचे खाना रखा गया है जहाँ पे मुझे सुखी घास और गीली घास भी दिखाई भी दे रही है जहा ये पिंजरे के अंदर कैद दिखाई दे रहे हैं ।